अ गोभी बैगन आलू रखे हुए हैं।

अ दो कुर्सियाँ रखी हुई है।

अ गार्डन में बहोत सारी साइकिल खड़ी हुई हैं।

पीले रंग के बोर्ड पर शर्मा एग्रो क्लिनिक --

एग्री बिज़नेस सेंटर लिखा है।

अ दो बोट लगे हुए नजर आ रहे हैं।

लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है।

लडकियों के पास आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान रखा हुआ है।

दो पुलिस वाले दिखाई दे रहे हें।

गाडी पे स्पीकर्स रखे हैं।

खंभों पर लाइट लगी हुई हैं।

यहाँ पंखे लगे हुए तजर आ रहे हैं।

बिल्डिंग पर ऑरेंज ग्रीन --

साक्षी नर्सिंग होम --